jmol application में script console and script commands के इस tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम निम्न करना सीखेंगे
* script commands के बारे में
* script console window कैसे प्रयोग करें
* script commands प्रयोग करके model के display को बदलना
* panel पर text की lines दिखाना
इस tutorial के अनुसरण के लिए:
आपको ज्ञान होना चाहिए कि jmol application में आणविक models को कैसे बनायें और edit करें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
इस tutorial को record करने के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ
ubuntu os version 1204
* jmol version 1222
* java version 7
jmol panel पर display को निम्न प्रयोग करके रूपांतरित किया जा सकता है
* menu bar में विकल्पों
* popअप menu में विकल्पों या
* script console पर scripting commands के द्वारा
पिछले tutorials में popअप menu और menu bar प्रयोग करके हमने display को रूपांतरित करना सीखा था
इस tutorial में हम script commands प्रयोग करना सीखेंगे
commands का set script commands कहलाता है
script commands panel पर model के display को control करती हैं
jmol rasmol program पर आधारित command language प्रयोग करता है
इन commands को लिखना scripting कहलाता है
jmol की scripting language का documentation और commands की सूची इस link पर उपलब्ध है
अब script commands कैसे प्रयोग करें:
script commands script console window पर टाइप किये जाते हैं
script console jmol की command line interface है
यह menu bar पर file और console विकल्प में उपलब्ध है
यह screen पर propane के model के साथ jmol application window है
अब display बदलने के लिए script console को प्रयोग करना सीखते हैं
script console window खोलने के लिए menu bar में file menu पर click करें
dropdown में नीचे जाएँ और console पर click करें
screen पर jmol script console window खुलती है
commands type करने के लिए script console window text area रखती है
window में सबसे नीचे script editor window खोलने के लिए एक button है
इस window पर variables clear history और state नामक अन्य buttons भी उपलब्ध हैं
उपलब्ध script commands की सूची को दर्शाने वाले पेज को खोलने के लिए help button पर click करें
इस window को बंद करने के लिए ok button पर click करें
अब कुछ सरल script commands लिखने का प्रयास करते हैं
इन commands को कैसे लिखें:
script console window पर $dollar prompt के बाद command type करें
script commands commands word के साथ शुरू होती हैं
spaces के द्वारा अलग किये गए parameters के set के साथ जारी रहती हैं
और end of line character या semicolon के द्वारा ख़त्म होती हैं
command लाल दिखेगी जब तक आपने command टाइप करना पूरा नहीं कर लिया है
command को सक्रिय करने के लिए keyboard पर enter की दबाएं
console को magnifier करने के लिए मैं kmag screen magnifier प्रयोग कर रही हूँ
उदाहरण के लिए propane में सारे carbons के रंग को नारंगी में बदलने के लिए; cursor को script console window पर रखें
dollar prompt पर type करें select carbon semicolon color atoms orange select carbon semicolon color atoms orange
keyboard पर enter की दबाएं
अब panel पर propane model में सारे carbons नारंगी रंग में हैं
अब सारे bonds के रंग को नीले में बदलें
dollar prompt पर type करें
select all bonds semicolon color bonds blue select ऑल bonds semicolon color bonds blue
enter दबाएं
देखें कि propane model में अब सारे bonds नीले रंग में हैं
आगे अब bonds का size बदलते हैं
dollar prompt पर type करें wireframe 005
decimal number bonds की radius को angstroms में लिखने के लिए प्रयोग होते हैं enter दबाएं
propane model में bonds के size में बदलाव देखें
उसी प्रकार bonds का size बढ़ाने के लिए prompt पर type करें wireframe 01
एक बार फिर bonds के size में बदलाव देखें
परमाणुओं का size बदलने के लिए हम command प्रयोग करेंगे spacefill के बाद decimal number
dollar prompt पर type करें spacefill 02
decimal number परमाणु की radius angstroms में दर्शाता है
enter दबाएं
देखें कि propane अणु में परमाणुओं का size घटता है
उसी प्रकार परमाणुओं का size बढ़ाने के लिए type करें:
spacefill 05
enter दबाएं
आप परमाणुओं के size में बदलाव देख सकते हैं
वैकल्पिक रूप से हम command cpk के बाद percentage या decimal number भी प्रयोग कर सकते हैं
percentage परमाणु की vanderwaals radius दर्शाता है
उदाहरण के लिए type करें cpk 20% और enter दबाएं
परमाणुओं के size में बदलाव देखें
jmol panel पर text की lines दर्शाने के लिए commands लिखना संभव है
text के लिए command line set echo के साथ शुरू होती है
screen पर यह text की स्थिति के बाद it है
उदाहरण के लिए हम panel के ऊपरी center पर अणु का name propane दर्शाएंगे
अतः type करें set echo echo top center semicolon echo propane
हम देख सकते हैं कि text propane panel के ऊपरी center पर दर्शाया गया है
हम panel पर text की अन्य lines भी दर्शा सकते हैं
उदाहरण के लिए मैं panel के नीचे बाएं कोने में कुछ text चाहती हूँ
dollar prompt पर
type करें set echo bottom left semicolon echo this is a model of propane
enter दबाएं
हम panel के नीचे बाएं कोने पर text line देख सकते हैं
दर्शाये हुए text का रंग size और font बदलना भी संभव है
उदाहरण के लिए मैं text arial italic font में चाहती हूँ
dollar prompt पर type करें font echo 20 arial italic
enter दबाएं
यह टेक्स्ट को arial italic फॉन्ट में बदल देगा
text का रंग बदलने के लिए हम color echo के बाद रंग का name प्रयोग करेंगे
अतः type करें color echo yellow और enter दबाएं
font के रंग में बदलाव देखें
इसी तरह आप और अधिक commands खोज सकते हैं और बदलावों को देख सकते हैं
इसको सारांशित करते हैं: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
* script commands और
* स्क्रिप्ट कंसोल
हमने निम्न भी सीखा
* script commands प्रयोग करके model की display properties बदलना और
* panel पर text की lines दिखाना
एक नियत कार्य में
3methylpentane का model बनायें
निम्न करने के लिए script commands प्रयोग करें
* सारे hydrogens का रंग नीले में बदलें
सारे bonds का रंग लाल में बदलें
और अणु को spin के लिए set करें
इस url पर उपलब्ध video देखें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
अधिक जानकारी के कृपया contact @spokentutorial org को लिखें